ये फोटो कितनी प्यारी तरीके से ली गई है ऊपरी तथ से ली गई है जैसे देखने में बहुत ही शानदार पिक्चर आई हुई है अगर आप नीचे देखो--

इस तस्वीर में आपको ये तस्वीर दिखे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तस्वीर मॉल की है या तो छोटे स्थानीय जनरल शॉप की है।

यहाँ पे फैसिलिटीज लिखी है कि यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा और शॉप काफी बड़ा है यहाँ पर सारी चीजें खाने की उपलब्ध है आप यहाँ पे जरूर बाय करें।

तो जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो इस तस्वीर में आपको ये एक घर का नजारा नजर आ रहा होगा--

पाल ज्वेलरिस नाम का यह शॉप नजर आ रहा होगा।

तो जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो इस तस्वीर में आपको ये आलीशान बिल्डिंग तो नज़र ही आ रही होगी।

तो जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो यह तस्वीर तो देख के आप बता ही सकते हो कि ये तस्वीर एक प्रोग्रामी जगह की तस्वीर है।

इस तस्वीर में आपको राष्ट्रीय आधु विज्ञान कुष्ट काल नाम का ये लाइब्रेरी नज़र आ रही होगी।

अगर आप सामने देखोगे तो उनके एक सर बैठे हुए जो कि उन्हें सिखा रहे हैं कि कौन सा आसन का कैसे करना है और सभी छात्र व छात्रा है उसे--